पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर --

यहाँ पर हमें एक हॉल नजर आ रहा है जहाँ पर बोहोत सारे युवती और युवक नजर आ रहे हैं।

दिवार पर बोहोत सारे बैनर लगें हुए हैं।

यहाँ पर कुछ अ चेयर भी लगा हुआ है।

जहाँ पर अ लाइट्स से बोहुत सारी सजावट की गयी है। यहाँ पर तीन चारपहिया वाहन और एक तीनपहिया वाहन दिखाई दे रहा है।

वाहन नाव में बंधे हुए रस्सी को खींच रहा है।

यहाँ पर हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

अ एक भवन भी दिखाई दे रहे है। कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा हैं।

जो कि लोहे की जाली से बंधा हुआ है।